यह तस्वीर किसी अ सैलून की दिखाई दे रही है।

साथ में ही एक हेयर स्प्रे दिखाई दे रहा है।

बायसाइकिल अ सायकिल मोटर साइकिल दिखाई दे रही है साथ में एक नीले रंग का कट्टा भी दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर किसी बिल्डिंग के पीछे की दिखाई दे रही है जहां पे बाहर ए_सी लगे हुए हैं।

और बिल्डिंग का रंग लाल दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक मंदीर की दिखाई दे रही है।

यहां पर तरह तरह की मछलियां कटी हुईं दिखाई दे रहीं हैं।

पायदान दिखाई दे रहे हैं पायदान का रंग अं जामुनी दिखाई दे रहा --

पीछे बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।